तस्वीर में एक बड़ा सा नदी देखा जा रहा है।

उपर एक बड़ा सा ब्रिज भी दिख रहा है।

इस तस्वीर में एक दिखा जा रहा है।

एक हाथी के ऊपर एक इंसान भी बैठा हुआ दिख रहा है।

इस तस्वीर में एक सैलून दिखा जा रहा --

सैलून के बाहर एक इंसान दिखा जा रहा है।

सैलून के अंदर भी कई लोग बैठे हुए दिख रहे हैं।

यह तस्वीर सैलून जैसी दिख रही है यहाँ पे दो चार लोग भी दिख रहे हैं।

आसपास बहोत सारे पेड़ पौधे भी दिखे जा रहे हैं।

इस भीड़ में नीला रंग का बड़ा सा ट्रेन दिखा जा रहा है।

दुकान के अंदर कुछ बिकते हुए दिख रहा है ।

इस तस्वीर में शाम जैसा नजरिया दिख रहा है।

बहोत सारे बिल्डिंग दिख रहे--

एक बस भी दिखा जा रहा है ।

आलू के ऊपर बहोत सारी मिट्टी लगी हुई दिख रहे है इसमें बहुत तरह तरह के आलू है छोटा आलू हो बड़े है मीडियम साइज सब साइज के।

बहुत सारे पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं।

मस्जिद के बाहर कुछ लिखा हुआ भी दिख रहा है।

दो व्हीलचेयर दिख रहा है।

तस्वीर में एका जिम जैसा नजरिया दिख रहा--

इस तस्वीर में एक इंसान कुछ बेचते हुए दिख रहा है।

इस तस्वीर में एक घर दिखा जा रहा है।

इस तस्वीर में एक घर दिखा जा रहा है।

उसके आस पास बहुत सारे पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं।

इस तस्वीर में एक मार्केट जैसा देख रहा है जहां बहुत सारे चीज दिख रहे हैं।

बाहर से एक लड़की बैठी हुई दिख रही है।

कुछ बड़ा सा बॉक्स टाइप है उसके ऊपर एक इंडेक्स भी दिख रहा है और वो बॉक्स टाइप में कुछ लिखा हुआ भी दिख रहा है।